दो छत का दिखाई पड़ रहे है सामने एक बड़ा सा कार भी खड़ा हुआ है किनारे एक पिकअप --

जहां पानी का एक छोटा तालाब दिखाई दे रहे हैं और किनारे एक बढ़िया घर भी हैं।

यहाँ लोग आराम करने नहाने रिलैक्स करने आते होंगे --

बड़ी दूर में एक खंभा टाइप दिखाई दे रहे है पता नहीं क्या है।

यहां पेट्रोल टंकी है ।

जो बाल कटावा चूका है और बाल बढ़िया दिख रहा है फोजी कटींग करवाया है।